इस तस्वीर मे हमे छत का सीन दिखाई दे रहा है या किसी बड़ी बिल्डिंग इंस्टीट्यूट का सीन लग रहा है जहा एक वॉचमन दिखाई दे रहा है बहुत बड़े बड़े खंबे दिखाइ दे रहे है बहुत बड़े बड़े दीवार दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर मे हमे किसी मॉल की तस्वीर दिखाई दे रही है। जहा बहुत से गाड़िया दिखाई दे रही है बहुत से पोस्टर दिखाई दे रहे है।

कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे है दुकाने दिखाई दे रहे हैं।

पेड़ दिखाई दे रहा है घास दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है पाईप दिखाई दे रहा है पौधे दिखाई दे रहे है।

इस दृश्य किसी कमरे की तस्वीर दिखाई दे रही है जहा कुछ गिटार रखे हुए है। ड्रम रखे हुए है टेबल रखे हुए है। दीवार का कलर पेंट हुआ कलर से --

इस मे हमे होटल की तस्वीर दिखाई गई है जहा कुछ लोग दिखाई दे रहे है और यहा बहुत से टेबल दिखाई दे रहे है कूर्चिया दिखाई दे रहे लाईट लगी हुई दिखाई दे रही है।